देख रहे है वो वाइट शर्ट वाइट लेगींग पहन --

यहां पे फर फ्रूट्स हैं अनार है ब्लैक ग्रेव्स हैं।

अडे फेकी हुए नजर आ रहे हैं।

बड़े मुझे की लिस्ट है कुछ एनी थिंग --

इनके सारे पार्ट रखे हुए हैं।

पीला रहा हैं।

यहां पे ब्लैक ककी की कार हैं पीछे कई सारे बाइक हैं।